जिसमें चार लोग काम करते नजर आ रहे हैं।

जिसमें जाली नुमा केज लगाया गया है।

जिसका फ़र्श सफ़ेद व काले रंग के टाइल्स से बनाया हुआ है।

इस तस्वीर में ग्लास के ऊपर गिलास रख कर कुल बीस ग्लास का उपयोग कर --

एक लाल झंडा और एक सफेद घर दिखाई दे रहा है।